लगाए हुए और सही तरीके से किया गया है और यह जगह देखने में बोहोत ही सुन्दर और हरा-भरा दिख़ रहा है।

यही बहोत ही बड़ी हॉल है जोकि बहोत ही बड़ी लाइट भी लगाई गई हैं और लगाई गयी है। बहोत ही खूबसुरत --

यह एक बोहोत ही सुन्दर मॉल है और इस मॉल का डिजाईन बोहोत ही सुन्दर लग रहा है जो सारी मेहनत में लग रहा है इस --

बगिये में सु बोहोत ही सुन्दर है और नीचे पानी भी है और यहाँ पर बोहोत ही अच्छा नज़ारा दिख रहा है और यहाँ दिखने में काफी हरे-भरे पेड़ भी --